इस दुकान को चला रहे हैं।

बहुत बड़ा मकान है जिसके--

एक सफेद कलर की बहुत बड़ी --

मकान है जिसके बगल में--

बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके--

एक बहुत ही पुराना सड़क है।

जिसके बगल में एक विशाल नदी है।

आगे एक बस और एक टैम्पो --

जो स्वाद हमें मीठी और आकार में टेड़ी मेड़ी है।

और दोनों साइड में--

जिसमें बहुत सारी औरतें और पुरु --

मंदिल है जो अपनी खूबसूरती--